पर बहोत प्यारा एक दिश्य है लाइटिंग का और आगे फर्श है चमकता और यहाँ पर बहोत सारे बोर्डस है रखे हुए।

देखिये भाई-बहनो ये चायपत्ती का बहुत प्यारा बाग़ है और यहाँ पे इतनी हरियाली है बहुत प्यारा मंजर है।

और यहाँ पर बहौत सारे जो हमारे दोस्त लोग हैं वो जिम कर रहे हैं और यहाँ पर कार्डिओ प्राइस बहौत अच्छी-अच्छी मशीने हैं बहौत अच्छी फैसिलिटी है।

और एक प्यारा सा लाइटिंग का एक मिरर में दिख रहा जो दृश्य वो बहुत प्यारा सा है।